ऊपर में तार भी है एक व्यक्ति उधर से आ रहा है।

एक बैठने वाला टेबल भी लगी हुई है।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ है और दीवाल में भी थोड़ा सा टाइल्स लगा हुआ है वही फॉल सीलिंग में भी व्हाइट कलर की एल_इ_डी बल्ब लगी हुई है।

यह एक मार्केट का चित्र है। यहाँ पे बहुत सारा दुकान दिखाई दे रहे है। एक दुकान के ऊपर बोर्ड में लिखा है आर आर ।

यह एक घर का चित्र है इसमें तीन व्यक्ति आपस में हाथ मिलाए हुए खड़े हैं।

बगल में एक दरवाजा दिख रहा है और एक खिड़की भी है नीचे एक काउंटर भी है।

बगल में एक सीढ़ी का चित्र है इसके बगल में एक दीवाल है दीवाल के बगल में ऊपर में बहुत सारा करकट लगाए गए हैं जो कि ब्लू रंग की है।

और नीचे में एक छोटा सा आम का पेड़ है।

पीछे एक लाल रंग की सूट भी है एक पिला रंग का एक कपड़ा है यहां पर बहुत सारे कपड़े हैं एक साड़ी भी है।

यह एक सजावट का समान है जोकि यह कागज का बना हुआ है।

एक आदमी का चित्र भी उसमें दिखाई दे रहा है पीछे एक डब्बा भी--

यह एक मन्दिर का चित्र है यहां पर बहुत सारे आदमी बाहर में खड़े हैं।

बस के पहिया के ऊपर लिखा है राज्य पथ।

यह एक घर का चित्र है यहां पर एक व्यक्ति बाहर में खड़े हुए हैं।

यह एक पेड़ का चित्र है यहां पर बहुत सारे हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

प्लेटफॉर्म में बहुत सारे यात्री खड़े हुए हैं।

यह एक एक ई रिस ई रिक्सा का चित्र है इसके पीछे बहुत सारे गमले रखे हुए हैं।

यह एक रिक्शा साइकिल का चित्र है यहां पर कुल दो रिक्शा साइकिल खड़ी हुई है।